यह बड़ी सी नदी है नदी के किनारे में एक जहाज़ खड़ी है।

और जहाज के किनारे यहां वैसे भी मिट्टी पत्थर वगैरह है।

कुछ गोनिया भी रखी हैं दुकान के बाहर।

यह साइड में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और यह बीच में रोड है जाने आने का रास्ते में और यहां पर एक बड़ा सा जाली जैसा गेट बना हुआ है।

और आगे एक रोड दिख रहा है रोड के साइड में किनारे पे दो बाइक खड़ी है एक ब्लू कलर है और एक पर्पल कलर है और दोनों बाइक पे हेलमेट रखा हुआ है।

सस्टाइल दिख रहा है और साइड साइड में लगा हुआ ब्लू कलर का कार्पेट लगा हुआ है उसकी उसी के ऊपर यह छोटे-छोटे बिल्डिंग बने हुए दिख रहे--

सामने राउंड साइड टेबल है और टेबल के ऊपर पिंक फ्लावर्स डिजाइन बना हुआ है एक कपड़ा बिछा हुआ है।

और उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का कपड़ा है और सामने तीन प्लेट है।

साइड साइड में बहुत से दुकान है दुकान के साइड फुटपाथ है फुटपाथ पे बहुत से पब्लिक चल रही है।

अ पीछे साइड बहुत सारे दुकान है दुकान के पीछे बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

और ऊपर आज एक सन दिख रहा है अ पहाड़ के पीछे--

ये एक बड़ा सा खेत है खेत के बीच में कुछ और मिट्टी में बोया हुआ है और पीछे से बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा बैनर है आ जिसके ऊपर रॉयल लिखा है और नीचे साइड कांच का डोर बना हुआ है बड़ा सा और उसके ऊपर--

लादी लेकर जा रहे हैं दो टायर वाली गाड़ी पे।

ये एक कैबिन को डेकोरेट किया हुआ है अ--

बीच में बड़ा सा गार्डन बना हुआ है जहां पर बहुत अच्छे-अच्छे फ्लावर --

अह बीच में एक गार्डन के एक स्टेचू बना हुआ है अह--

साइड में मिठाई वगैरह रखे हुए हैं अंदर कांच के --

ये एक छोटा सा बच्चा सा वाइट कलर के शर्ट में उसके शर्ट पे कुछ डिजाइन बने हुए हैं और पीछे साइड पेड़ है अ नारियल का और--

ये मैरिज हॉल है बड़ा सा अ यहां पर सब डेकोरेशन किये हुए है लाइन से खानेकी चीजें रखी हुई है अ सब अलग अलग डीश रखे हुए है।

वो पाइप से पानी दे रहा है प्लांट्स को यहां पर बहुत सारे छोटे-छोटे प्लांट्स है और नीचे गीली मिट्टी है।